इसके अलावा पीछे एक इमारत दिखाई दे रही है जो कि --

एक एक्वागार्ड दिखाई दे रहा है जो पानी साफ करने के काम आता है।

इसके अलावा नदी के ऊपर बना हुआ एकठो पुल दिखाई दे रहा है। पुल के ऊपर का कलर सफ़ेद है।

ई फोटो मा हमको दो पहाड़ दिखाई दे रहे है जिसके ऊपर हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।

बैंक का शटर नीले रंग का है उसके अलावा बिल्डिंग का कलर सफेद है।

यहाँ काफी भीड़ है कई लोग सब्जियां खरीद रहे है।

जो कि एक सफ़ेद रंग की मेज पर रखा हुआ है उसके अलावा यहाँ की दीवार का रंग सफ़ेद है।

इसके अलावा हमें इसके अन्दर कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की है एक टीन शेड भी लगा हुआ है।